meet the gimp के spoken tutorial पर आपका स्वागत हैं
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
शुरुआत में मैं कुछ ऐसा करुँगी जिसका उल्लेख करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ
image में कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा इसे सेव करना भूल जाती हूँ
अतः मैं file save as पर जाती हूँ और इसे comicxcf की तरह सेव करती हूँ
xcf gimp का मूल file format है और यह file में सारी layers की जानकारी रखता है
gimp में jpeg या tif या अन्य की तरह कुछ भी सेव न करें अगर आप आगे इसके साथ कार्य करना चाहते हैं
वहां से आप किसी भी format में export कर सकते हैं लेकिन अगर आप आगे का काम करना चाहते हैं तो xcf प्रयोग करें
अतः क्या करना है पहली चीज़ मुझे इस image को थोड़ा clear करना है
यहाँ दो समस्याएँ हैं पहली रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की इमेज के पीछे जो आदमी है
और दूसरी चीज़ यहाँ जो नीचे अव्यवस्था है
यहाँ यह statue बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है और मुझे लगता है यह इस image के किनारों के points में से एक है
अतः पहले मैं यहाँ वाली चीज़ों को यहाँ से दूर करती हूँ
अतः मैं image में zoom करती हूँ और brush tool चुनती हूँ
यह cloning tool द्वारा की हुई अच्छी चीज़ है और मुझे यहाँ बिलकुल सटीक काम नहीं करना है क्योंकि final image में सारी छोटी चीज़ें अदृश्य हो जाएँगी
अतः मैं clone tool चुनती हूँ और brush का आकर बदलती हूँ
अब मैं ctrl दबाती हूँ और शुरूआती point को पाने के लिए click करती हूँ और अब मैं सिर्फ paint करना शुरू करती हूँ
लेकिन वह शुरू करने से पहले मैं overlay mode को normal mode में opacity को 100 में बदलती हूँ और अब पेंट करना शुरू करती हूँ
image थोड़ी सी धुँधली है इसलिए मैं paint करने के लिए एक अन्य brush चुनती हूँ
और अब मैं यहाँ border पर जाती हूँ और paint करती हूँ
अतः so आदमी चला गया है
यहाँ अव्यवस्था रह गयी है
मैं यहाँ flower pot रखना चाहती हूँ लेकिन यहाँ से इस वाली चीज़ को हटाना ही है
इस क्षण में मैं flower pot के इस border का ध्यान रखूंगी
यदि मैं इस तरह से इस image को रखती हूँ तो आप cloning के निशान देख सकेंगे लेकिन जब मैं comic mode में खोलूँगी तो वे नष्ट हो जायेंगे
तो अब यहाँ flower pot के बारे में कुछ करते हैं
मुझे लगता है मुझे इस point से clone करना चाहिए
इस zoom step में यह ज़्यादा ठीक नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है यह कार्य करेगा
comic image में मूलतः the भाग हैं
पहला बिना किसी रंग के काले धब्बे या गहरे धब्बे हैं जो image को संरचना देते हैं
फिर लाइनें हैं जो image में forms और items को परिभाषित करती हैं
और फिर रंग है और हम इसे धब्बों वाले tutorial की तरफ शुरू करेंगे
और उसके लिए
मैं layer double करती हूँ और इसे ink कहती हूँ
मैं threshold tool चुनती हूँ और image में click करती हूँ और info window को image में खींचती हूँ
आप यहाँ देखते हैं कि image काली और सफेद है
यह tool image को काले और सफ़ेद में विभाजित करता है
यदि pixel इस समय 82 से lighter है तो लाल हरे और नीले की average value के लिए संयोजन सफ़ेद है
और यदि level 82 से नीचे है तो यह कला हो जाता है
अब यहाँ पहली समस्या हमारे सामने आती है
जब मैं इस slider को चारों तरफ draw करती हूँ तो इफ़ेक्ट काफी गहरा हो जाता है
यहाँ यह value 129 रॉल्फ स्टाइनॉर्ट के चेहरे के बाये भाग कंधे और statue के लिए अच्छी होगी
यहाँ आखों के लिए यह अच्छा होगा
और यह दूसरी आँख के लिए
अब इस image के लिए मुझे भिन्न ink layer को प्रयोग करना है
अतः हल्की तरफ से शुरू करते हैं यहाँ इसकी तरह और image में 100% तक वापस जाएँ
मैं यहाँ इसे double करती हूँ और threshold tool को चुनती हूँ और इस slider को नीचे खींचती हूँ
लेकिन उसके बाद मुझे ऊपरी layer को अदृश्य करना है
मुझे लगता है यह value चेहरे के इस भाग के लिए अच्छी है
मैं इस layer की copy बनाना चाहती हूँ और इसे प्रत्यक्ष बनाना चाहती हूँ और अब मैं इस layer पर कार्य करुँगी
मुझे यहाँ बीच की terms को देखना है
चेहरे का यह भाग मुझे लगताहै काफ़ी अच्छा काम करता है अतः मैं image में चारों तरफ देखती हूँ
statue भी ठीक है
इस image की यहाँ एक अच्छी परिभाषा है और रॉल्फ स्टाइनॉर्ट के हाथ के पास line अदृश्य है और जिसे optical illusion optical illusion कहा जाता है
मुझे लगता है यह अच्छा है और image में रहना चाहिए
अब मैं threshold tool चुनती हूँ line को यहाँ प्रत्यक्ष बनाती हूँ और थोड़ी सी परिभाषा प्राप्त करने के लिए bright भागों को देखती हूँ अतः इसे ऊपर slide करती हूँ
यह बेहतर लगता है
अब मेरे पास मेरी ink layer की 3 प्रतियाँ हैं
पहली ink light है
ऊपरी layer ink dark है
और अब बीच की layer को सिर्फ ink name दें
अब तीनों layers को देखते हैं और यह निश्चित करें कि किसका उपयोग ज़्यादा करना है
मुझे लगता है ink layer एक अच्छा base है क्योंकि यह बहुत light है और यह बहुत dark है
अतः मैं इस layer को नीचे रखती हूँ और मैं dark layer पर और light layer पर एक layer mask जोड़ती हूँ
मैं एक layer mask जोड़ती हूँ black में जो फुल transparent है
अतः सबकुछ यहाँ अदृश्य हो जाता है
जब मैं light layer के इस layer mask पर सफ़ेद draw करती हूँ तो image इसमें दिखाई देगी
अतः यहाँ मैं normal mode के साथ brush tool चुनती हूँ और opacity 100%
मुझे लगता है मैं hard brush प्रयोग करुँगी और pressure sensitivity size होनी चाहिए अतः जब मैं सतह पर brush को दबाती हूँ तो dot बड़ा हो जायेगा
मेरा foreground रंग सफ़ेद है
तो शुरू करते हैं
मुझे लगता है चेहरे का बायाँ भाग ब्राइट किया जाना चाहिए
image में zoom करने के लिए मैं 1 दबाती हूँ
मुझे लगता है यह brush बहुत छोटा है अतः मैं इसे थोड़ा ऊपर scale करती हूँ
यह बेहतर लगता है
लेकिन संभवतः यह ज़्यादा bright है
यह या तो काला या सफ़ेद होना चाहिए
अतः मैं x की के साथ रंग को switch करती हूँ और दोबारा यहाँ paint करती हूँ
लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ इसे छोड़ सकती हूँ और उसके ऊपर अगली layer रख सकती हूँ
अब हमें क्षेत्र और संरचना के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी है तो हमें लाइनों को भूल जाना चाहिए और बस यहाँ संरचना को देखें
इसे ऐसे ही छोड़ दें
मैं एक अन्य layer आसानी से जोड़ सकती हूँ और add मैं dark भागों को सफ़ेद रंग के साथ paint करती हूँ
अब देखते हैं अगर यहाँ मैं थोड़ा s दिखा सकती हूँ
मुझे लगता है यह बहुत ज़्यादा है
मैं चेहरे को थोड़ा ज़्यादा darker करना चाहती हूँ
और यहाँ भी
मुझे लगता है वह ज़्यादा dark है
यहाँ अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है लेकिन मैं इसे यहाँ छोड़ूंगी और इसे लाइनों के साथ अगली step कर leave के बाद देखूँगी और फिर मैं यहाँ समायोजित कर सकती हूँ
इसे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट किया जाना है
अतः हम वहां edit देखेंगे
इस step में मुझे कुछ लाइनें जोड़नी हैं और यह background layer को डबल करके किया जा सकता है और इसे ऊपर रखें और इसे lines नाम दें
lines भिन्न रंगों के बीच के किनारे हैं
मैं filters पर जाती हूँ फिर edgedetect और यहाँ मेरे पास gaussians edge detect का अंतर है
सम्बंधित slider radius है और अगर आप इसकी संख्या घटाते हैं तो लाइनें पतली हो जाती हैं
अगर आप संख्या बढ़ाते हैं तो लाइनें चौड़ी हो जाती हैं और आपको image में अधिक विवरण प्राप्त होता है
मैं 10 के आसपास पसंद करुँगी पर मैं 30 तक जा सकती हूँ और फिर निश्चय करुँगी कि वास्तव में मुझे कहाँ रुकना चाहिए
जब मैं 30 पर जाती हूँ तो मुझे किनारे नहीं मिलते हैं क्षेत्र मिलते हैं और यहाँ 12 यह देगा
और मुझे लगता है मैं 10 पर ही रहूंगी
मैं इस layer के layer mode को multiply पर set करुँगी और बढ़ते रंग के लिए बाद में मुझे image में सफ़ेद को कम करने की आवश्यकता है
अब जाँचते हैं कि हमने अब तक जो किया है now ठीक है या नहीं
अतः मैं lines layer को on और off करुँगी और आप यहाँ देखेंगे कि lines layer के on होने पर कुछ स्पष्ता होती है
और अब मैं dark ink layer को deselect करती हूँ और light ink layer को रखती हूँ
संरचना जो मैं dark ink layer के साथ रखना चाहती हूँ lines layer में दिखाई देती है
अतः मैं dark ink layer को switched off ही रहने दूंगी
मुझे नहीं लगता कि यहाँ इन layers को मिलाने की ज़रुरत है
मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूंगी जिससे मैं कुछ बदल सकती हूँ और यह अंतिम image में होगा
अगली step जैसा मैंने कहा मुझे यहाँ सफ़ेद channel को कम करना है और यह levels tool से किया जा सकता है और मैं levels को 240 तक कम करती हूँ
जब मैं इस layer को switch of करती हूँ तो आप देखते हैं कि मेरे पास gray background है और यहाँ थोड़ी see रंग की जानकारी है
image में रंग प्राप्त करने के लिए मैं background layer को copy करती हूँ और इसे colour name देती हूँ और इसे ऊपर रखती हूँ और layer mode को colour पर set करती हूँ
लेकिन यह अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे mode बदलना चाहिए
यहाँ image में थोड़ा सा रंग प्राप्त हो गया है
लेकिन मैं अधिक saturation चाहती हूँ इसलिए मैं दोबारा background layer की copy बनाती हूँ और इसे saturation name देती हूँ
मैं layer mode को saturation पर set करती हूँ
मुझे लगता है यह saturation mode पहले से ही काम करता है और effects बहुत अच्छे हैं
रंग में अधिक flatness होनी चाहिए थी और हाथ comic नहीं लग रहा है
मैं देखूंगी कि यह कहाँ से आता है
अतः अब मैं इस sliders को play करना शुरू कर सकती हूँ
saturation colours करते ही यह थोड़ा so flatter हो जाता है और ज़्यादा water colours जैसा लगता है अतः यह एक अजीब इफ़ेक्ट है
अब यहाँ मैं layers के साथ play करना शुरू करती हूँ
अतः मैं lines layer को switch off करती हूँ और आप यहाँ देखते हैं की यह इफ़ेक्ट lines से नहीं है बल्कि colour और saturation से है
अब मैं कुछ समायोजन कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पर अभी भी layers हैं
मैं चेहरे को चमकाना चाहती हूँ अतः मैं ink light layer चुनती हूँ सफ़ेद foreground ink के साथ brush चुनती हूँ
मैं image में zoom करती हूँ
brush के आकर को कम करें और इसे थोड़ा सा scale करें और अब मैं यहाँ आँख को paint करना शुरू करती हूँ
यह बहुत ज्यादा है
यह बेहतर लगता है
अब मैं इस भाग में paint करती हूँ
यह बहुत ज्यादा है
आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ बहुत से रूपांतरण संभव हैं जो आप यहाँ इन क्षेत्रों को बदलकर image में कर सकते हैं
यह this है
आप यहाँ बहुत से बदलाव कर सकते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं सही रास्ते पर you या नहीं
लेकिन अब तक यह मुझे पसंद आया
अब देखते हैं कि इसके आलावा हम क्या कर सकते हैं
पहली चीज़ हम lines के बजाए भिन्न layer प्रयोग कर सकते हैं
अतः मैं lines को switch off करती हूँ और मुझे बहुत ही अजीब रंग मिलते हैं क्योंकि मेरे पास फिर से सफ़ेद background है
अतः यहाँ एक अन्य layer mode और इसे white पर set करें और multiply mode प्रयोग करें और इसे 240 grey से भरें
अब मुझे लगभाग वही image मिल गयी है जैसी यहाँ मेरी lines के साथ थी
अब मैं उन्हें on करती हूँ
मेरे पास लाइनों की जानकारी बाहर आती है लेकिन यह comic इफ़ेक्ट अभी भी वहाँ है और मैं देख सकती हूँ क्या बेहतर है
कुछ अलग तरक़ीबों की कोशिश करते हैं
मैं colour और saturation layers को double करती हूँ और उनके साथ कुछ करती हूँ
यहाँ मैं image के बाहर विवरणों को प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ
अतः filters blur और gaussian blur पर जाएँ
और यहाँ में एक value चुनती choose जो मुझे एक अच्छा इफ़ेक्ट देती है
आप देखते हैं कि रंग थोड़े से चिकने हो गए हैं
अतः saturation copy के साथ भी ऐसा करते हैं
filters पर जाएँ guassian blur दोहराएं
और अब मेरे पास वास्तव में flat रंगों के साथ flat image है
अतः मैं मूल colour को on करती हूँ और मुझे यहाँ एक अजीब इफ़ेक्ट मिलता है
अब इन्हें दोबारा नाम देते हैं saturation blurred और colour blurred
अगर मैं blurred saturation को unblurred colour के साथ मिला दूँ तो मुझे यहाँ कुछ रंग मिलते हैं जो थोड़े से अजीब लगते हैं
मुझे यह पसंद होते अगर विशेष रूप से ये यहाँ नाक पर न होते तो
अतः इसे वापस on करें और यहाँ यह इफ़ेक्ट है
आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप धुँधलापन कम करते हैं तो आपको ज़्यादा स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है
यह एक वास्तविक कार्यक्षेत्र है
आपके पास यहाँ बहुत सी सम्भावनाएं हैं जैसे इनको कैसे करना है क्या करना है और क्या ठीक करना है
इसे करना वास्तव में मजेदार है
मूल tutorial के निर्माता ने ज़बरदस्त काम किया है
मैं इस image के दोनों रूपों से ज़्यादा ख़ुश नहीं हूँ
मुझे यहाँ संरचना और फूल statue और यहाँ flower pot पसंद है
मुझे हाथ के पास और चेहरे के सारे विवरण पसंद नहीं हैं यह थोड़ा ज़्यादा flat हो सकता था
on blurred के साथ मुझे चेहरे में और हाथ के पास विवरण पसंद है लेकिन मुझे फूल पसंद नहीं है जो पूरी तरह से धुँधला है
अतः अब मैं दोनों images को मिलाती हूँ और मैं colour blurred के साथ शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी कुल दिखावट saturation blurred से ज़्यादा पसंद है
लेकिन मैं सारी layers को on करती हूँ और saturation blurred और colour blurred पर layer mask जोड़ती हूँ और मैं black layer mask fully transparent जोड़ती हूँ
और अब मैं saturation layer mask के साथ काम करना शुरू करुँगी अतः मैं foreground रंग में सफ़ेद चुनती हूँ और यहाँ पेंट ब्रश चुनती हूँ
अब मैं painting शुरू करती हूँ
मैं image में उन भागों पर paint करती हूँ जहाँ मैं image में थोड़ी ज़्यादा flatness चाहती हूँ
यह कुछ अजीब लगेगा क्योंकि अब मैंने colour layer को on किया है
अतः अब मैं shift + ctrl + a दबाकर सबकुछ चुनती हूँ और ctrl + c दबाकर इसे copy करती हूँ image पर जाएँ और ctrl + v दबाएं और floating selection पर click करें और ctrl + h या anchor layer के साथ यहाँ मेरे पास copy है
अतः आप इन layer मास्क को copy भी कर सकते हैं और मुझे लगता है यहाँ मैं इस image को छोड़ दूंगी
मुझे लगता है यह काफ़ी हद तक अच्छा उदाहरण है और अंत में इस sliders के साथ मैं थोड़ा सा play करती हूँ
इसकी पुनरावृत्ति करते है
पहले आप image layer को copy करें और threshold tool के साथ inked image बनायें
उन क्षेत्रों को देखें जिन्हें आप काल या बहुत dark करना चाहते हैं
फिर आप base image को दोबारा copy करें और edge detect filter के साथ एक line layer बनायें और फिर layer mode को multiply पर set करें
इस layer में आप levels tool के साथ सफ़ेद को कम करके लगभग 240 gray करें
फिर आप base image को दोबारा copy करें और एक colour layer बनायें
colour mode को colour पर set करें
और अंततः आखिरी बार आप base layer को copy करें और saturation layer बनायें और यहाँ आप layer mode को saturation पर set करें और अब भिन्न layers की या कुछ layers पर opacity के साथ आप शुरू करें
अलगअलग तरह से कोशिश करें परिणाम अच्छी तरह से मिश्रित हैं लेकिन कुछ आश्चर्यजनक हैं
अधिक जानकारी के लिए